सामने एक बिल्डिंग है और आसपास कुछ--

और यहां पर बहुत सारे कपड़े रखे गए हैं।

जोकि कंधों पर बैग उठाए हुए यहां से गुजर रहा है।

यहां पर कुछ कुर्सियां और कुछ बेंच रखे गए हैं।

और बहुत सारी कुर्सियां रखी गई है।

और यहां से एक गेट जा रहा है।

पर कुछ पोस्टर लगाएं गएं हैं।

दुकान के बाहर कुछ टायर रखे गए हैं।

पर कुछ कुर्सियां और कुछ बेंच रखे गए हैं और यहां पर कुछ लोग बैठे हुए--

और यहां पर कुछ बर्तन भी रख--

यहां पर सामने कपड़ों की दुकान है और--